यह एक पुराने जमानों का शिल्प कारीगिरी दिखा रहा है जिसे पत्थर से बनाया गया है और इसको बहुत ही सुन्दर तराशा गया हैं।

यह एक सिटी का मॉल हैं।

जहाँ दिवाली के उस्तव को मनाने के लिए यहाँ कुछ कारीगरी की गई है जिसमे दिया बनाया गया है और रंगोली बहोत बड़ा बनाया गया है और फूलझड़ी भी दिख रही है।

यह एक ट्रेन का स्टेशन है जहाँ कई लोग खड़े है रेल का इंतज़ार कर रहे हैं।

ट्रांसपोर्ट का जगह दिख रहा है जहाँं बहुत बड़ी जी_सी_पी लगी हुई है मिट्टी को खोदा जा रहा है जैसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो --

इंजीनियर अपना काम कर रहा है वर्कर भी --

यह एक दुर्गा माँ का भव्य --

यह गणेश जी की बहुत से भी बड़ी मूर्ति है जिसे शेषनांग के ऊपर बैठाया गया है।